चर्च के सामने क्रॉस पर यीशु मसीह की तस्वीर--

इसमें सामने जा रही है इस लड़की ने सूट पहना हुआ है।

जो की जालंधर में हैं इसके बाहर काफी व्हीकल लाइन में खड़े हैं इस--

थ्री डी ऑनलाइन है इसमें काफी तरह के बड़े छोटे टायर्स मिलते हैं।

ये साइड में काफी शावर चल रहे हैं नीचे काफी कलरफुल छोटे गमले--

फैन के साथ एक ब्लैक कलर का क्लॉक भी लगा हुआ है।

ये लड़के द सिटी कॅफे के आगे अपनी तस्वीर करा रहें हैं।

ये ऊपर छत पर पेंट कर रहा है इस लड़के ने--

सामने से एक मिट्टी के ढेर--

पैलेस के बीचो बीच काफी फ्लावर्स पॉट पड़े हैं ये पोट --

इस तस्वीर में ऑफिस के सामने एक क्लॉक पड़ा है क्लॉक में फाइव फोर्टी फाइव टाइम हो रखा है।

सामने वाल पर एक ए_सी भी लगाया हुआ है।